और एक आदमी उसकी तस्वीर लेता हु--

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है तार दिखाई दे रही है दूर पहाड़ भी दिखाई दे रहे है।